एक बड़ी इमारत दिख रही है।

नजर आ रहा है। एक व्यक्ति सफ़ेद शर्ट पहेने हुए खड़ा हुआ है। साथ ही कुछ बच्चे भी दिख रहे हैं और कुछ युवक भी दिख रहे हैं ।

व्यक्ति ने कुरता पहना हुआ है साथ ही महिलाओ ने अलग-अलग रंग की साड़ी पहन रखी है।

कुछ बेंचे भी दिखाई दे रही हैं साथ ही में ईसा मसीह की हमें एक प्रतिमा भी दिखाई दे रही है और --

कर रहे हैं और एक दो व्यक्ति आते जाते भी नजर आ रहे हैं और हमें हरे भरे पेड़-पोधे भी दिखाई दे रहे हैं ।

हमें एक दुकान नजर आ रही है जीस मे एक बोर्ड लगा हुआ है । जिसमे लिखा है --

और हमें एक खिड़की भी दिखाई दे रही है।